में लगा हुआ खाने का समान दिखाई दे रहा है।

यह किसी दुकान की पिचर हैं। .

इस पिक्चर में हमे एक अ शोरूम दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक सफ़ेद रंग की --

और मटर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। सीढ़िया दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमे --

बहुत सारी घांस दिखाई दे रही है।

और एक शेर चुनी दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है।